पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे छाया वगैरह आ रही हैं।

छोटे छोटे जो पौधो से अंदर खड़ी है पौध के अंदर पानी है।

और बहुत सारे तार से है लोहे के--

एक दुकान सी है जिसके ऊपर कुछ सामान सर्जिकल अस्पताल है। एक दुकान भी है सप्त नाम से--

और यहां बहुत सारे बिल्डिंगे हैं इनमें ए_सी वगौरा लगी हुए है साथ में यहां पे--

रेड कलर का कारपेट ग्रीन कलर का जिम का बहुत सारा सामान है स्काई ब्लू कलर की एक पेंटिंग लग रही है कुछ बैनर लग रहे हैं टैटू वगैरा--

और जैसे संतरे और संतरी कलर का एक--